शैंपू है कुरकुरे है मैगी है।

ये एक पहाड़ी एरिया है जिसमें पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है पानी साफ है चारों तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए।

देखने में बहुत सुंदर लग रहा है देखने का बहुत मन कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं और उ जो है की --

पेड़ लगा हरा-भरा पेड़ लगा हुआ है कुर्सी लगा --

यह एक बगीचा है जो की हरा-भरा है चारों तरफ पेड़-पौधे हैं रंग-बिरंगे फूल लगा हुआ है और चारों तरफ ईटों से घेरा हुआ है एक आदमी है जो की --

फील्ड पे दौड़ रहा है और बाकी आदमी बगल मे खड़ा हो करके देख रहा है। हरे-भरे होने के कारण बहुत अच्छा लग रहा है देखने में --

ये एक नदी है जिसमे कि नाव लगा हुआ है बैठने की भी जगह है चारों तरफ --

हीया रंग बिरंग के मकान है देखने में बहुत अच्छा लग --